और वे दोनों एक दूसरे को देख कर हंस रही है।

उसके बाहर एक लड़का खड़ा है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पेहनी हुई है उसके उपर--

एक बाल गिरा हुआ है उसके नीचे एक काडी पैंट पेहन रखी और पैरों मे दो जुराबे है।

उसके साइड में दो पिलर खड़े हैं।

मसाला बनाने लग रही है एक लड़की कुर्सी देखने लग रही है ईंटों का रंग लाल है।

के साइड में एक बड़ी सारी दीवार घड़ी है जिसके अंदर सात बजे हुए है।

उसके साइड में एक बाथरूम है वहां पर दो बुलट बाइक खड़ी हुई है।

जो बिल्कुल खराब है जिसका रंग--

उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जिसका रंग येलो है।

पानी गिरता हुआ शोरूम है उसकी साइड में एक नर्सरी है।

और वहां पर काफी बच्चे बैठे हुए हैं।

मेरे सामने एक बहुत बड़ा रोड दिखाई दे रहा है।

जहा एक गाड़ी का एक्सीडेंट भी होआ हुआ है वह एक दूसरे की तरफ देखने लग रहे है।

वहां पर पुलिस भी आ गई है और सोलर प्लेट लगी हुई है पंखा भी ऊपर चलने लग गया है और वहां पता चल गया है कि--

मेरे सामने एक वाटर पार्क है जिसका नर--

और काफी सारे लोग उसके अंदर नहाने लग रहे हैं।

उसके अंदर जा के देखा तो पांच रेफ्रिजरेटर हैं।

का विमान उड़ा रहे है दो गेम खेलने लग रहे हैं दो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं जीनके हाथ में हेलिकॉप्टर का रिमोट है।

जिनको यह पता चल जाता है कि वे आपकी ।

जो दो दो टप्पड़ के ऊपर खड़ी है दो नंगे पैर खड़ी हैं दोनों ने गेट के साइड में खड़ी हैं और एक फोन पे बात करने लग रही हैं।

मेरे सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका नाम है।

मलेरिया विद्या इनफॉर्मेशन उसके साइड में हमारा पैसा कब दोगे--